और एक आदमी जा रहा है पैंट उठा कर और बहुत पानी है ब छोटा गाडी डुब गया है नीलो--

यहाँ पे मिठाई का दुकान है और बहुत आइटम का मिठाई है| और नीचे मिठाई का फोटो - ओटू लगाया गया है और बहुत आइटम का मिठाई गुलाबो जामुन है।